सामान दिख रहा है ऊपर छत दिख रही है।

इस चित्र में मुझे एक बड़ा सा कछुआ नज़र आ रहा है।

रोड दिख रहा है एक कार दिख रही है एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस चित्र में मुझे एक बड़ा सा सड़क नजर आ रहा है बड़ी सी मस्जिद नजर आ रही है।

गुंबत दिख रही है मीनारे दिख रहे हैं बड़ा सा रोड दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

लाइट दिख रही है बहुत बड़ा सा गार्डन नजर आ रहा है।

इस चित्र में मुझे एक बहुत बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं बहुत सारे दुकानें नजर आ रही हैं।

फर्श दिख रहा है बड़ा सा टेबल नजर आ रहा है।

बहुत सारी मोटरसाइकिलें नजर आ रही हैं।

इस चित्र में मुझे बिल्डिंगें दिख रही हैं बहुत सारी गाड़ियां दिख रही हैं।

इस चित्र में मुझे बड़ा सा तालाब दिख रहा है पेड़ दिख रहे हैं।

लाइट दिख रही है और बहुत सारे फोटो दिख रहे हैं।

इस चित्र में मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

टाइल्स दिख रहे हैं बहोत बड़े-बड़े कांच दिख रहे हैं।

टाइल दिख रहे हैं बहुत सारे लोग दिख रहे हैं बहुत सारे टेबल कुर्सी नजर आ रहे हैं।

बहुत बड़ी सी दुकान दिख रही है कांच दिख रहे हैं बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं।

इस चित्र में मुझे एक बहोत बड़ी सी छत दिख रही है।

इस चित्र में मुझे एक बहोत बड़ा तालाब नजर आ रहा है।

बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है।